सामने में एक बड़ा सा पानी भी दिखाई दे रहा है।

सामने में दो आदमी भी दिखाई दे रहा है।

मुझे इस तस्वीर में एक बड़ा सा साफ नदी दिखाई दे रहा है।

नाव पर दो आदमी भी दिखाई दे रहा है।

सामने में टेबल भी दिखाई दे रहा है।

झे इस तस्वीर में एक बड़ा सा बोर्ड दिखाई दे रहा है।

ऊपर के आसमान भी दिखाई दे रहा है।

ऊपर की आसमान भी दिखाई दे रहा है।

सामने में एक कुर्सी भी दिखाई दे रहा है।

सामने में एक आदमी का पैर भी दिखाई दे रहा है।

बिल्डिंग की खिड़कियां भी दिखाई दे रहा है।

और कई सारे टिशू पेपर भी दिखाई दे रहा है सामने में एक--

और सामने में एक टेबल भी दिखाई दे रहा है।

मुझे इस तस्वीर में एक गाड़ी दिखाई दे रहा है।

पास कई सारे लाइट बल्ब भी दिखाई दे रहा है।

दीवार पर एक घड़ी भी दिखाई दे रहा है।

सामने में दो टावर भी दिखाई दे रहा है।

और एक स्कूटर दिखाई दे रहा है सामने में एक दरवाजा भी दिखाई दे रहा है।